और पलदा भी लगा हुआ है पीछे वहाँ पे टेबल भी है भी है यहाँ पर वह पीछे एक और टेबल रखी हुई है काफी बड़ी नहीं है छोटी टेबल है।

जिम है वहां पे एक जिम ---

और बहोत ज्यादा हुआ है और बहोत सारी चीज हुन पड़ी हुई है वहां पे जिम करने वाली-----

बाल दत कर दिए है आजू-बाजू में पुरे बल दत कर चुका है वो और पीछ हाथ लदा हुआ है